तीन लोग बाहर खड़े हैं और दो लोग जो है वो शॉप के अंदर खड़े हुए हैं।

और पीछे जो है एक बुके पड़ा है फ्लावर्स का --

जिसमें कई सारी गाड़ियां जो हैं वो ऊपर खड़ी है और कई गाड़ियां नीचे खड़ी हुई हैं।

और पीछे ही कुछ पेड़ लगे हुए हैं।

और एक डस्टबिन रखा हुआ है लाल रंग का।

जिसके ऊपर लिखा है स्लीपवेल शोपी --

एक औरत जो है वो अंदर से बाहर आती हुई दिखाई दे रही है पीछे काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं।

एलीफेंट है ऐसे ही बच्चों के खिलौने रखे हुए हैं।

अ तीन जो है वो बेड चेयर लगी हुई है।

इस तस्वीर में कई सारे जो है वो शॉप दिखाई दे रही है।

और जिस पे एक ऑरेंज कलर का बैलून लगा है।

तस्वीर में एक रास्ता दिखाई दे रहा है।

एक औरत आगे दिखाई दे रही है जिसने अपने हाथ में एक बच्चे को पकड़ रखा है।

पीछे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

पीछे जो है एक पडदा लगा है।

जिसमें दो लोग जो है वो बैठे हुए हैं।

और कुछ है वो बच्चिया खड़ी हुई है।

पीछे एक चौड़ा मैदान दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक होटल के बाहर का दृश्य दिखाई दे रहा है।